जोकि किसी अ स्पोर्ट्स स्टोर की शाखा दिख रही है।

कुछ लोग खड़े हैं बस के इंतजार में उसमे से एक जो है --

सामने एक चित्र में जो दिख रहा है वो एक अ चौबीस घंटे आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध उपलब्ध कराने वाली हॉस्पिटल का चित्र है।

और एक शैड है। शैड के अंदर भी एक अ पारिश नाम का बोर्ड है।

ऊ क्या-क्या मिलता है। वह सब का चित्र लगाया हुआ है। जैसे पिज्जा है। बर्गर है।

सूरज की जो रिफ्लेक्शन है वो नदी में दिख रही है।

सामने के चित्र में अ एक कनक ऑटोमोबाइलस के वर्कशॉप का चित्र है जो कि अअ --

अ वस्तु का जो कलर है। वो पूरा वह पुरातन मतलब एक ओल्ड वाला --

एक स्कूटर एक बाइक और कचरा उठाने वाली एक गाड़ी का फोटो दिख रहा है।

यहाँ इस फोटो में बहौत सारी कंपनियां जैसे होती है वैसे ही एक कंपनी इसमें दिख रही है जिसमे की --

हमें दिख रहा फोटो जो है किसी घर के सामने का बरा बरामदे का फोटो है जो बरामदे में है अ उसमें --

मेंन इंटरेंस का चित्र लिया हुआ है इसके अंदर जो है अ एक ॐ की नकाशी घर के दरवाज़े के ऊपर दिख रही है।

और ग्रीन -ग्रास एक ग्राउंड दिख रहा है और छोटे-छोटे सर्प -हॉप दिख रहे हैं।

साड़ी पहनी हुई है उसका ब्लाउस जो है गोल्डन कलर का है। उसके हाथ में लाल कलर की --

बैंगलस है और कमर में कमर बंद है।

लाइन है जहां पे बोहोत सारे लोग लाइन में खड़े हैं और सामने एक सिंगल पेट्रोल पंप जो है वो दिख रहा है।